उसके पास एक कार खड़ी है जो ब्राउन या ग्रे कलर की है।

एक्स लॉन्ज इजीज और बाहर पुतले रखे हैं कुछ लोग हैं जो होटल के खुलने का इंतजार कर रहे हैं।

इस तस्वीर में कोई बिल्डिंग हैं।

दो शीशे हैं कुछ मेकअप का सामान है जैसे क्रीम पाउडर वगैरह तथा --

एक पब्लिक पार्क का दृश्य है जिसमें एक व्यक्ति है जो नीचे घास पर बैठा है।

तस्वीर में एक मटकी रखी है पानी की और लाइट्स जल रही है।

और ब्राउन कलर का लकड़ी का गेट है जिसके बाहर लोहे का शटर लगा है और बहुत से दरवाजे है।

जो अपनी लाइन का इंतजार कर रही है शीशे खिड़कियां लगी हुई हैं।

बोथरा कॉम्प्लेक्स की तस्वीर बोथरा कंपलेक्स का बोर्ड लगा है किराना स्टोर जिओ डिजिटल लाइफ --

पीले कलर का लकड़ी का दराज भी बना हुआ है।

अट्ठाईस चालीस कुनतीस बहत्तर सफेद कलर की बिल्डिंग है शटर लगा हुआ है।

चारों तरफ पेड़ की हरियाली है सामने पानी की बड़ी सी टंकी है।

और हरे कलर की अंदर पेड़ लगा है और वाइट कलर का लोहे का गेट लगा है।

कलर दिखाया गया है एक बत्तख भी नजर आ रही है जिसने मुंह खोल रखा है।